पर एक बहोत ही बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है। कमरे में हमे यहाँ पर बहोत बहु ही सारे फूग्गे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

बहुत ही बड़ा चौक दिखाई दे रहा है चौक के आजू-बाजू में हमे गोल-- तरफ हमे यहां पे सड़क दिखाई दे रही है।

और एक औरत दिखाई दे रही है जो की पीली कलर की साड़ी पहने हुए जाती नजर आ रही है और हमे यहाँ पर बहोत सारी बाइके खड़ी दिखाई दे रही है और हमे यहाँ एक बहोत बडी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बहुत ही बड़ी सड़क दिखाई दे रही है सड़क हमे बहुत दूर-दूर तक जाती हुई नजर आ रही है सड़क का कलर हमे यहां पर काला दिखाई दे रहा है और इसपर हमे बहुत सारे लोग जाते हुए नजर आ रहे है जो कि बाइक से जाते हुए दिखाई दे रहे है।

एक बहोत ही बड़ी पहाड़ी के ऊपर यह रोड बनी हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर बहोत सारी पहाड़ी दिखाई दे रही है पहाड़ी हमें बहोत दूर-दूर तक फैली हुई नजर आ रही है और पहाड़ी के ऊपर हमें बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी सड़क दिखाई दे रही है| सड़क हमे बहुत दूर-दूर तक जाते हुए नजर आ रही है| सड़क का कलर हमे यहाँ पे गढ्ढा दिखाई दे रहा है।

और हमें यहाँ पर बहुत सारे गार्ड दिखाई दे रहे है जो की दूर-दूर तक फैले हुए नजर आ रहे है और हमें यहां बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है जो की दूर-दूर तक फैले है।